पानी हैं और ये घास दिख रहे हैं बड़े-बड़े--

औ वायर दिख रहे है और खम्बे की लाइन दिख रही है ऊपर आसमान भी दिख रहा हैं।

यहाँ एक शॉप है और यहाँ पे कपड़े मिलते हैं जैसे की थान वाले कपड़े--